फोरिच लूपके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह आखरी लूप है जिसे मैं कवर करने जा रहा हूँ
इस लूप का बुनियादी मूल सिद्धांत यह है कि यह अरै के मानों के माध्यम से लूप करेगा
या एक अरैके एलीमेंट्स को
मुझे याद है कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में कहा था कि एक अरैके एलीमेंट्स को इद टैग्स भी कहते हैं
एक अरै के एलीमेंट्स को इद tagsटैग्स नहीं बोलते
जब आप एक अरै के मान को एचो एको कर रहे हैं
यह यहाँ पर इद आईडीहैं जैसे न्यूमेरिकल idसंख्यात्मक आईडीkeysकीज़ या tagsटैग्स
अतः मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ
तथापि वापस अपने फोरिच लूप पर चलते हैं
अब हम शुरू करने के लिए एक अरै बनाएँगे
मैं इस नंबर्स को बोलने जा रहा हूँ और यह एक अरै है
हमें अब इसे बनाना है
मैं आपको यह अपने पहले के ट्यूटोरियल्स में दिखा चुका हूँ और हमारे पास संख्याएँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10
अतः फोरिच इस तरह से है
अतः हमारे पास फोरिच है और फिर यहाँ पर हमारी कंडीशन है
अच्छा तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहना है
अतःचलिए मैं अरै को नाम देता हूँ अर्थात नम्बर्स
और फिर हम कहते हैं एएस और फिर हम कहते हैं valueअच्छा तो हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं
हम इसे कुछ भी कह सकते हैं किन्तु मैं वेल्यू टाइप करूँगा
और फिर कर्ली कोष्ठकों के भीतर प्रमुख कमांड एचो valueएको वेल्यूहोगा
और अंत में हम एक लाइन ब्रेक जोड़ देंगे और चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं
अतः हमारे लूप से यह सामने आया
यह लूप के जरिये एको करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है
आप एक अरै के माध्यम से एको करने की लिए अन्य लूपों का उपयोग कर सकते हैं
आप को इसे खुद लिखना पड़ेगा जबकि संभवतः यह करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है
अतः जब तक आपको यह स्मरण है आप अपनी अरै के माध्यम से एको कर सकते हैं अपने अरै के हर एक भाग पर ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर सम्भवतः इसे एक नई अरै में संचय कर सकते हैं
यद्यपि मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ कि कैसे एक सरल तरीके से हेरफेर करें
अब मैं क्या करूँगा कि मैं 2 गुणे का पहाड़ा करने जा रहा हूँ
अतः मैं इसे निकाल देता हूँ और मैं निम्न कहूँगा
अतः मुझे यहाँ अरै की संख्या टाइम्स 2 इस चाहिए और फिर इसके बाहर नई वेल्यू होगी
अतः हम अरै के प्रत्येक एलीमेंट को गुणा करने जा रहे हैं अरै की प्रत्येक संख्या को 2 से
चलिए नम्बर्स बोल कर शुरु करते हैं
माफ़ कीजिये हम वेल्यू कहने जा रहे हैं क्योंकि हमने प्रत्येक फोरिच एलीमेंट वेल्यू नामक इस वेरिएबल में रखा है
अतः इनमें से प्रत्येक की वेल्यू लूप के जरिये बारी में हैं
अतः वैल्यू टाइम्स 2 इस और फिर इसके बाद हम कुछ कोष्ठक डालेंगे
इसके अन्दर हम लिखेंगे वैल्यू टाइम्स 2
याद रखिये यह एक गणितीय ऑपरेटर है एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था
यह एक गणितीय ऑपरेटर है किन्तु सही नाम अरिथ्मेटिक है
यह दो से गुणा करने जा रहा है
अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसे गुणजके रूप में बनाता हूँ
एक नए वेरिएबल के रूप में
और यहाँ मल्टीपल
2 के बराबर होने जा रहा है
अतः अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने मूलतः इसे बदल दिया है
मैं इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकता हूँ
चलिए इसे लोड करें और रिफ्रेश करें
हम ब्रेक भूल गये
अतःचलिए यहाँ अंत में बस इसे जोड़ देते हैं
हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं
माफ़ कीजिये1 टाइम्स 2 इस 2
2 टाइम्स 2 इस 4 इसी तरह से पूरा 10 टाइम्स 2 इस 20 तक
हम जानते हैं कि यह सारे सही हैं
हम इसे बदल सकते हैं चलिए कहते हैं कि हमें 10 गुणे का पहाड़ा चाहिए
रिफ्रेश करें 1 टाइम्स 2 इस Oh
नहीं हम इस 2 को गुणज में बदलना भूल गये
अब यह हमारी संख्या दर्शाएगा
रिफ्रेश करें
अतः 1 टाइम्स 10 इस 10 2 टाइम्स 2 इस 2 टाइम्स 10 इस 20 10 टाइम्स 10 इस आ हंड्रेड
अतः जब तक हम गुणज का मान बदलते हैं चलिए 12 गुणे का पहाड़ा बोलते हैं
हमारे 2 मान बदलने जा रहे हैं
हमें यह मिला है
अतः इस फोरिच लूप और अरै से मैंने वास्तव में एक मूलभूत मल्टिपल प्रोग्राम बनाया जिससे कि आप अपने पसंद की संख्या के किसी भी सेट के लिए टाइम्स टेबल देख सकते हैं
तो यह फोरिच लूप है
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ
देखने के लिए धन्यवाद